सामने एक बहुत बडी नदी सी लग रही है और उसमें छोटी छोटी पानी की लहरें जा रही है खुला आसमान है चारों तरफ हरियाली है और लटा और खंभा वगेरा --

कलर का दो आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी चल रहा है और येलो कलर की टीशर्ट और ब्लैक कलर का चड्डा पहने हुए एक आदमी है ब्लू कलर की टीशर्ट ग्रे --